मुझे इस फोटो में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं।

मुझे यहां एक रोड दिखाई दे रही है।

ये यहां अह एक कूलर दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां एक कित्तालय दुकान दिखाई दे रहीं है।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

मुझे इस फोटो में दो तीन ड्रम दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में खिड़की दरवाजा दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में एक रूम दिखाई दे रहा है।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

ये इस फोटो में बहोत सारी टेबल्स दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है।